व बैठा दिखाई दे रहा है लड़का एक वाटर फाउंटेन पर बैठा नज़र आ रहा है वॉटर फाउंटेन काफी बड़ा नज़र आ रहा है।

टी दिखाई दे रही है मूर्ति काफी अच्छी नजर आ रही है मूर्ति को काफी अच्छे से डेकोरेट किया गया है यहाँ पर काफी सारा डेकोरेशन किया गया है।

अस्पताल की बिल्डिंग सफ़ेद दिखाई दे रही हैं अस्पताल में काफी सारी गाड़िया दिखाई दे रही हैं अस्पताल में काफी सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

स्टैंड दिखाई दे रहा है बस स्टैंड काफी बड़ा दिखाई दे रहा है बस स्टैंड पर काफी सारे बसे नजर आ रही है यहाँ पर कुछ लोग बस मैं बैठे नजर आ रहे है।

यहाँ सामने रोड पर काफी लोग नजर आ रहे हैं सामने काफी सारी दुकाने दिखाई दे रही हैं सामने बिजली का खम्बा नजर आ रहा हैं यहाँ पर काफी सारे तार दिखाई दे रहे हैं।

खड़ा दे रहा है लड़के के बाजु में पानी की टंकी नजर आ रही है पानी की टंकी के पीछे काफी अच्छा गार्डन बना हुआ है गार्डन में काफी सरे पेड़-पौधे लगे हुए हैं।

--दिखाई दे रहा है। पार्क में स्टैचू दिखाई दे रहा है। स्टेचू काफी बड़ा नजर आ रहा हैस्टैचू का कलर सफेद दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक खंबा नजर आ रहा हैयहाँ पे कुछ पेड़- पौधे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे कुछ मटि नजर आ रही है।